कुछ जो हैं लेडीज हैं वो बैठी हुई हैं।

और ये वाइट कलर का कोई घर वगैरा दिखा रखा है।

और नीचे ये एक वाइट कलर की गाड़ी भी खड़ी हुई है।